सामने एक गुड लक बोरिंग सेंटर दिखाई दे रहा है जहाँ पे राधा मार्केट आर_एन मासा पूर्णिमा लिखा हुआ है।

सामने एक बिल्डिंग सी दिखाई दे रही है जिसके ऊपर टीन का छत दिखाई दे रहा है और ऊपर आसमान खुला दिखाई दे रहा है बिल्डिंग नजर आ रही है।

बल्ब लगा हुआ दिखाई दे रहा है सामने की दीवार नीली हरी दिखाई दे रही है बहुत से लोग खड़े हुए हैं।

आस-पास भी बहुत सारे बिल्डिंग दिखाई है।

ऊपर का आसमान खुला दिखाई दे रहा है उसमें एक पक्षी उड़ता हुआ नजर आ रहा है आसमान नीला है।

सामने एक रोड दिखाई दे रहा है जिसपे दो आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे है दो बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रहे है मोटर साईकिल खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

सामने दो कार दिखाई दे रही हैं सामने टेस्ट लिखा हुआ है बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने एक मूर्ति रखी हुई दिखाई दे रही है जिसके चारो ओर पार्क बना हुआ दिखाई दे रहा है।

इसके यहां मूर्ति के चारो ओर सीलिंग बनी हुई है जिसमे पैक है मूर्ति दिखाई दे रही है मूर्ति का कलर सफेद दिखाई दे रहा है जिसमे वो रखी हुई है। वो काली दिखाई दे रही हैं।